सामने की तरफ एक लड़का नजर आ रहा हे लड़के के हाट में फ़ोन वाच नजर आ रही हे लड़कन के--